और दो लेडिस है एक लेडिस ने रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं एक ने हल्के पिंक कलर के और जेंट्स ने व्हाइट कलर की शर्ट --

कलर ग्रीन है और नदी में नाव जा रही है जिसका कलर ब्लू और वाइट है जै जिसपर बहोत सारे लोग हैं।

ये एक फूल वाले की दुकान है जहां पर दो लोग खड़े हैं एक ने स्लेटी कलर के कपड़े पहन रखे और दूसरे ने रेड कलर के --

क्रीम कलर का है और लाइट लगी हुई हैं जिनका कलर ब्लैक है सामने एक आदमी खड़ा है जिसने हल्के --

और वाइट कलर का है सामने एक वॉच है जिसका कलर --

ये एक हनुमान आयुर्वेदिक दुकान है जिसका कलर येलो और वाइट है।

ये एक पार्क है जिसमें तीन लड़के और एक लड़की खेल रही है।

ये एक रूम है जहां पर तीन बेड लगे हुए हैं बेड पर गद्दा लगा है उसके ऊपर सफेद कलर की--

बहोत सारे पेड़ हैं जिनका कलर ग्रीन है और एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लू व्हाइट --

अंदर वाली मूर्ति का कलर ब्लैक है जहां पर पीले और रेड कलर के फूल हैं और वहां पे लाइट लगी है लाइट का कलर --

मंदिर का कलर हल्का ग्रीन है और सामने गेट है गेट का कलर चॉकलेटी है।

बस में बहोत सारे लोगों की भीड़ हैं।

ये एक रूम है जहाँ पर एक लाइट लगी हैं उसमें यलो कलर कि लाइट --

चॉकलेटी कलर का फर्श हो रखा है सामने एक बिल्डिंग है।

सामने ए_टी_एम में दीवाल है जिसका कलर ब्लू है और ए_टी_एम मशीन रखि है जिसका कलर ब्लैक है उस पर एक ब्लू कलर का --

ग्रीन और चॉकलेटी है एक बोर्ड लगा है जिसका कलर व्हाइट है यहां पर दो लड़के बैठे हैं।

और सामने लाइट के तार गए हैं।